हमें एक पटरी दिखाई दे रही है यहां पर बिजली की तारें भी दिखाई दे रही हैं यहां पर बिजली के पोल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे ट्रैक्टर भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहां पर ट्रैक्टरो का कलर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर एक काउंटर भी दिखाई--

यहाँ पर बोहत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाइ रहा है।